ये एक मेरे गाँव के पास में ये एक धर्मस्थल है| यहाँ पे जो है अ भोलेबाबा का मंदिर है ये और यहाँ पे बहोत सारे भक्त आते हैं पूजा करने के लिए--

और यहाँ पे काला कलर का गेट है उस पे आई.टी.आई. भवन लिखा हुआ है और दो एक पीला कलर का बोर्ड लगा हुआ है और उसके काला कलर के गेट के ऊपर भी पीला कलर का प पेंट होकर के लिख --

ये एक ऑफिस है यहाँ पे एक टेबल लगा हुआ है और एक चेयर है और उस टेबल पे कुछ फाइल रखी हुई है।

एक एच_पी का पेट्रोल पंप है यहां पर यहां पर ट्रक लगा हुआ है और ये पेट्रोल पंप के जस्ट बगल में एक बोर्ड लगा हुआ है जो की रोड के पास है।

और ये एच.पी. का ब्लू कलर से छत डला हुआ है पेट्रोल पंप के ऊपर।

बच्चों को यहाँ पे डांस सिखाया जाता है जो की छोटे-छोटे बच्चे आ करके डांस सिखते हैं और यहाँ पे एक डांस सिखाने वाले ट्रेनर होता है।

और ये एक आई.डी.बी.आई. का बैंक है। शाखा है जो की घूम में है और यहाँ पे कुछ बातचीत करते हुए ये है।

और ये काफ़ी अच्छा डांस क्लासेस है और ये काफ़ी फेमस भी है।